और यहां का सामने का व्यू देखिए कितना सुंदर है कितना--

और यहां पास ये शोरूम जैसा लग रहा है।

और इतने अच्छे साउंड रग रहे हैं जैसे कि लग रहा है कि अगर हम इनसे बेस अच्छे बजाए तो बहोत अच्छा लगेगा बहोत ही आनंद आएगा हम लोगों को।

जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम यहां पर ये एक--

बहोत बढ़िया लाइटिंग है और यहां पर बहोत बढ़िया जेवरात मिलते ज्वेलर्स मिलते हैं तो आप लोग अपनी फैमिली के साथ आकर--

और खाने पीने की कुछ सामान मिल सकते हैं तो आप लोगों को यहां आ सकते हैं और--

और ये सूर्य का आप लोग लालिमा देख सकते हैं बहोत बढ़िया सुंदर व्यू दिख रहा है और यहां मैं यहां पर--

जैसा कि आप लोग देख सकते है हम पहोच चुके है एक होटल मेहेलवार नाम का है।

तो जैसे कि आप लोग जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं माँ जो शारदा जूस सेंटर ।

एन्ड आइस क्रीम पार्लर पर ठीक है तो आप लोग आकर यहां पर--

इस पूरी नदी ये तालाब की सैर कराएंगे और सामने देख सकते हैं आप सूरज कितना व्यू इतना कितना सुंदर व्यू दिख रहा है हम लोगों को --

कपड़े क्या डिजाइन है क्या लुक है क्या शूज है बहोत बढ़िया--

जैसा कि आप लोग देख सकते है हम पहुंच चुके है एक बैंक --

और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं यहां पर ये भी एक जिम है।

यहां पर ये हमारा मंदिर टाइप का है मुस्लिम लोगों का मुस्लिम समाज का समुदाय का ये एक पूजा स्थल है यहां पर सुबह--